उस नर्सरी में कहीं गुलाब के कही चमेली के फूल भी दिखाई दे रही है।

इस फ्लोर के खिड़की कांच से बनाई गई है।

टेलर भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

उसके सामने एक खंबा भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है उस मंदिर के आगे--